कुछ लेडीजों के पोस्टर हैं कुछ जेंटसो के पोस्टर हैं इसमें बहुत अधिक संख्या में आदमी हैं। बाहर कुछ बाइक खड़ी हुई हैं कुछ कार खड़ी हुई हैं ऊपर बैनर है पानी है बिजली का खंभा है।

पत्ते पर रखे हुए है और दो गिलास भी दिखाई दे रहे है और वो प्लेट एक टेबल पे रखी हुई है डोसा आधा पलटा हुआ है आधे डोसे पर और चटनी हरे और व्हाइट कलर मे दिख रही है।--

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप में बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई है पेट्रोल पंप के उस --

इस पीक्चर मे एक बहुत बड़ी दुकान लगी हुई है दुकान लेडीस के समानों की ही है और बहोत सारी लेडीसे भी खड़ी हुई है।

बड़ा डिब्बा बना हुआ है जो पोस्ट ऑफिस का है जिसमे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए खत लिखता हो तो वो यहाँ डाल देता हो और उस पर लिखा भी है डिप्ट ऑफ़ पोस्ट इंडिया और उसके--

इस पिक्चर मे एक माउंटेन टाइप है और माउंटेन पर ऊपर जाने के लिए जीने भी बने हुए है।

और बहुत सारे पेड़ पोदहे भी दिख रहे है कुछ चट्टान के उस साइड दिख रहे है तो कुछ चट्टान के इस साइड दिख रहे है पेड़ों पर--

और पेपर पर बहुत सारी जानवरों की डेकोरेशन की गई है जानवरों की डेकोरेशन भी कागज से की गयी है और उस के आगे भी कागज से अलग-अलग--